यहाँ पर बहुत सारी लाइटे लगी हुई है| यहाँ बोहोत --

यह ईमारत है। ईमारत बहुत बड़ी है। यहाँ काँच की खिड़की भी लगी हुई है।